हम देख सकते हैं कि एक पूड़ी है जोकि एक--

जिसमें हम देख सकते हैं कि एक आदमी अपना यहां पे जिम वर्कआउट लगा रहा है और उसके पीछे एक आदमी अपना रनिंग कर रहा है।

यहां पे हम देख सकते हैं कि बच्चे सब--

बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे हैं उसके नीचे हमको छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं।